ये एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है। जहा--

ये बहुत बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिस पे बहुत सारे--

बहुत सारे बड़के बड़े से ड्राम रखे हुए हैं

बड़ासा भारीसा बड़ा सा गोल सा सामान लादा गया है जिसका रंग--

फार्म बना हुआ है यहां पे बहुत सारे सामानें रखी हुई हैं अलग अलग सामानों में कॉपी किताब रखी हुई है बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं।

आसमानी कलर का पर्दा लगा हुआ है बहोत सारे--

और केला रखा हुआ बहोत सारे नारियल रखा हुआ है पपीता रखा हुआ है।

बहोत सारे खाने पीने की सामने है बहोत सारी मशीन रखी हुई है।

गोल गोल घुमाके क्लिप लगाया गया है और साइड मे एक बड़ा सा टेबल पड़ा हुआ है।

ये बहोत बड़ा सा राउंड बना हुआ है जहां पे कंपटीशन किया जाएगा मुकाबला बड़ा सा स्टेज बना हुआ है।

अनाउंसमेंट करने बहोत से डांस के पिक्चर लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सी लड़कियां बैठी हुई हैं और उसको सादे कलर से बनाई--

ये बहुत सारा सा पार्टी मनाया जा रहा यहां पे पार्टी सेलिब्रेट किया जाता है सोफे लगे हुए है।

लगा हुआ है बड़ा सा पोस्टो लगा हुआ है जिसमें--

कचरे का डिब्बा रखा हुआ है एक आदमी जो बाइक पे बैठा हुआ दूसरे आदमी से बात कर रहा है बहुत सारी बाइके रखी हुई हैं।

ये एक बहोत बड़ा सा बुलडोजर है जिसमें--

गेट पे काला सा शीशा लगा आईना लगा हुआ है और गेट मे भी।

बहोत सारी बेसिट रखी हुई है और बहोत सारे--

एक बड़ा सा प्लेट रखा हुआ टेबल के ऊपर मे काले कलर का काला रंग का प्लेट है उसमें--

अल्युमिनियम का प्लास्टिक लपेटा गया है और उसपे चटनी डाली गई है।

और जहां सबके बालकनी में बहुत से छोटे-छोटे गमले मैं फूल रखा हुआ है बड़े-बड़े पेड़ छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

साइड में बांस और ईंटों से जोड़कर किया गया नीचे में--